वही इस चित्र में दिखाया गया है।

यह एक जिम का कमरा है।

इस चित्र में भगवान की तस्वीर भी है।

जे_सी_बी और ट्रैक्टर्स के पार्ट्स मिलते हैं।

साथ में भगवान की तस्वीरें भीं पूजा के लिए रखीं गई हैं।

पार्क में झुला भी लगा हुआ हैं झूले पे बहोत सारे लोग--

किचन में ऊपर सामान भी रखा हुआ हैं।

इस चित्र में मच्छी की दुकान दिखाई दे रही है।

इस चित्र पानी की केन भी रखी है।

इस चित्र में प्राणी संग्रहालय का मुख्य द्वार दिख रहा है।